बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी खड़े हुए हैं।

लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

एक औरत भी खड़ी हुई है और एक गाय भी खड़ी हुई है।

बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है और एक पंखा भी लगा हुआ है।

और एक सफेद रंग की बाल्टी भी स्टूल पर रखी हुई है।

इस फोटो में दो बहोत बड़े बड़े थमले खड़े हैं।

यह एक कॉलेज का फोटो है।

एक लोहे का बहुत बड़ा खंबा है।

इस फोटो में बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

व्यक्ती ने काले रंग की टोपी लगा रखी है।

इस फोटो में बहोत सारे व्यक्ति हैं।

कुर्सियों पर पीले रंग के पर्दे ढके हुए हैं।

दो सफेद रंग की लाइट भी लगी हुई है।

एक पीले रंग की दीवार है।

लोहे का स्टूल भी रखा हुआ है।

एक नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है और दो तीन व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

कुछऔरतों ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए है।